और वहां ले मंडप सजा हुआ है और बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हुए दिख रहे है कुछ लोग खड़े हुए भी दिख रहे है।

और उसके सामने भी क्लोन पे बहुत सारे बिल्डिंग है और ऊपर बहुत सारे वायर भी दिख रहे हैं।

हां पे एक रूम जैसा दिख रहा है और वहां पे एक टी_वी भी दिख रहा है और उसके नीचे भी बहोत सारे--